काले अंगूर है और हरे अंगूर है अंगूर के गुच्छे बहुत बड़े-बड़े है और पीछे अनार रखे हुए है जो कि लाल कलर के है संतरे रखे हुए है और सेब रखे हुए है सब पीछे।

नूडल्स का पैकेट पीले कलर का है और संतरे कलर का है मसाले के डब्बे रखे हुए हैं कुछ डिटॉल के डब्बे रखे हुए हैं बगल में और कुछ शैंपू के डब्बे रखे हुए हैं।